घेरा हुआ ईंट का है घर और नीचे में ग्रिल लगा हुआ है लोहा का और गोल-गोल सा है घर का डिजाइन मे बना हुआ।